रेड कलर की भी कुर्सी दिख रहे हैं।

हरे भरे ग्राउंड दिख रहे हैं।

पहाड़ नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे ट्रैक्टर नजर आ रहे है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

पेपर नजर आ रहे हैं।

बल्ब लगाए हुए दिख रहे--

दो महिलाए नजर आ रहे है।

सारे कागज नजर आ रहे हैं।

वन जीरो थ्री नजर आ रहे हैं।

यह एक मशीन का दृश्य है।

फॉयल दिख रहा है।

एक वाइट पर्दे निजर आ रहे हैं कपड़े पसारे हुए नजर आ रहे हैं।

सीढ़िए दिख रहे हैं बहुत सारे पर्दे दिख रहे हैं।

यह एक सैलून का दृश्य है।

इसे पहले आगे हमे अक्षर दिख रहे है।

इनमें चित्र बनाए हुए दिख रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है।

कुछ लटकाए हुए सामान दिख रहे हैं।

एक किताब नज़र आ रहे हैं।

कुछ बैग टांगे हुए भी दिख रहे हैं।